होरिज़ान्टल लाइन में है कुछ स्ट्रैट लाइन में कुछ स्क्वेयर है कुछ रेक्टेंगल --

ऑफिस है जहाँ पर अभी --

लड़ियों से सजाया हुआ है। इसके बाहर कुछ व्यक्ति खड़े हैं। औरत भी है।

और इसके स्क्रैच लग रहे हैं।

जिसका रेट अलग-अलग है कुछ दो सौ निन्यानवें कुछ तीन सौ निन्यानवे।

एयरोप्लेन खड़ी है जो कि उड़ने की --

ये सब क्रिकेट खेल रहे हैं ।

है जिसकी मंजिल चार हैं।

यह एक ट्यूशन सेंटर है।